bash में nested for loop पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम एक उदाहरण की मदद से nested for loop के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system और gnu bash version 4110
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
इस tutorial को सीखने के लिए आपको bash में loops से परिचित होना चाहिए
संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ
nested loop के परिचय के साथ शुरू करते हैं
loop के अंदर loop को nested loop के loop में जाना जाता है
syntax देखते हैं बाहरी for loop expression 123
भीतरी for loop expression 123
statement 1 statement 2
भीतरी for loop का अंत बाहरी for loop का अंत
nested for loop का एक उदाहरण देखते हैं
पहले directory की संरचना देखते हैं
यहाँ desktop पर simplenestedfor named directory है इसे खोलें
हमारे bash test test2 और test3 और bash script subdirectories हैं
प्रत्येक सबडाइरेक्टरीज में बहुत सारी text files हैं
अब हम अपने code लिए आगे बढ़ेंगे
यह program प्रत्येक subdirectory में सभी files को प्रदर्शित करता है
कृपया ध्यान दें कि इसे एक command line से प्राप्त किया जा सकता है ls1 hyphen oner hyphen r test * test asterix
लेकिन हम इसे for loop का उपयोग करके करेंगे
कृपया ध्यान दें हमारी bash script का name nestedhyphen for dot sh है
यह हमारी shebang line है
यह बाहरी for loop है
यह for loop test name से शुरू होने वाली directories को जाँचेगा
पहली echo line subdirectories के name को प्रदर्शित करेगी
दूसरी echo line एक रिक्त line बनायेगी
यह भीतरी for loop है यह directories में मौजूद files के लिए जाँच करेगा
ls directory के कंटेंट को प्रदर्शित करता है
1 hyphen one प्रत्येक line में एक फ़ाइल को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है
यहाँ हमने फाइलों को सूचीबद्ध किया done भीतरी for loop का अंत करता है
यह command बाहरी for loop के प्रत्येक cycle के पूरा होने के बाद एक वर्टिकल line prints करता है
done बाहरी for लूप का अंत करता है प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने कीबोर्ड पर एक साथ ctrl+alt+t कीज दबाकर टर्मिनल खोलें
अब directory पर जाएँ जहाँ हमारी bash script है
यह desktop पर है
type करें cd desktop folder simplehyphen nestedhyphen for में जाएँ
enter दबाएँ
type करें chmod plus + x nestedhyphen for dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash nestedhyphen for dot sh
enter दबाएँ
आउटपुट प्रदर्शित होता है यह दर्शाता है files in test directory files in test2 directory और files in test3 directory
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
संक्षेप में इस tutorial में हमने nested for loop के बारे में सीखा
नियत कार्य के रूप में
nested while loop का उपयोग करके पुन: टाइप करें nested hyphenfor dot sh bash script
अपने program को nestedhyphen while dot sh name से सेव करें
नीचे दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें यह spoken tutorial को सारांशित करता है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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद